जिसे हम घरों में पालते हैं ये हमें गांव में दिखता है यह सुबह रोज बांग देता है जिससे लोग उठाते हैं गांव के लोग।

बच्चे यहाँ पढ़ने आते है | इस स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक है यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ाई होती है बच्चो में डिसिप्लिन लाया जाता है डिसिप्लिन सिखाया जाता है यहाँ के बच्चे बहुत ही अनुशासित होते है ।

यह एक खेल का मैदान है। यहाँ पे सुबह-शाम बच्चे खेलने आते हैं। इस मैदान में बहुत घास है और ये मैदान काफी बड़ा है। यहाँ पे सुबह लोग टहलने भी आते हैं।

यहाँ पे एक छठ पर्व पे मेला लगा हुआ है। पु पंडाल बनाये गए हैं। बहुत --